यहां पर कुछ लोग गाड़ी को उठाए हुए खड़े हुए हैं जो कि रेड कलर का दिख रहा हैये एक मजदूर ऑरेंज का कलर का ड्रेस पहने हुए हैं।

पर झींगे अ रखे हुए हैं जो की ग्रीन कलर और वाइट कलर के हैं और एक रेड कलर और नए के झींगे हैं बड़ी-बड़ी फिशें हैं ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए एक अंकल खड़े हुए हैं जो कि चश्में लगाए हुए हैं।

दो पहाड़ियों के बीच में खड़े हुए हैं बाहर पहाड़ी की चोटी पर छोटे-छोटे पेड़ो के पत्ते निकल रहे हैं और नीचे दो छोटे-छोटे पहाड़ पर आ पत्थर पड़े हुए है और दो रेड कलर अंदर कि तरफ दिखाई दे --

यहाँ पर बहोत लंबे-लंबे पंखे नजर आ रहे है एक ट्यूब लाइट लगी हुई है और सफेद कलर की दीवारें पुती हुई है।

यहाँ पर झिंगो को हाथ लगाती हुई एक आंटी नजर आ रही हैं जिनके हाथ में कड़ा है नाक में लॉन्ग है एक पीछे मास्क पेहेने हुए अंकल है यह आंटी ब्ल ग्रीन कलर का ब्लाउज पेहनी हुई है अंकल ब्लू कलर की शर्ट पेहेने हुए हें।

यहाँ पर एक व्यक्ति दुकान के अंदर बैठे हुए है जो कि ब्लैक कलर का कैप लगाए है कैप के ऊपर रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है और एक जैकेट पेहने हुए है कैलकुलेटर रखा हुआ है।

भी एक डांस क्लास भी एक योगा क्लास कि तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ब्राउन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और क्रीम कलर कि पुताई दिख रही है।